पूल का नज़ारा दिखाई दे रहा है इसमे इसका नीला पानी दिखाई दे रहा है और इसके हरी पट्टी दिखाई इसके आस- पास पता हुआ है टॉस लगे हुए बड़े-बड़े।

यहा मकान दिखाई दे रहा है उसका नीचे का फर्श का कलर नीला है इसमे दो और इसमे सब-सबकी लाल की दिखाई दे रही है।

लगे हुए है और इसमे पीले लगे हुए है कुछ उस नीले रखे हुए घास लगी हुई है सामने पेड़ पौधे दिखाई दे बिल्डिंग दिखा रही डीपी खम्बे दिखाई दे रहे।

और इसमे सफ़ेद कलर से पुती हुई है बिल्डिंग इधर से रॅका रखी हुई है मे काले कपड़े जमे हुए दिखाई दे रहे है और सामने एक लड़का खड़ा हुआ है लाल रंग की टी-शर्ट पहने हुए और जीन्स पहने हुए।

विभिन्न प्रकार के सामान है ऊपर लाइट जल रही है रंग बिरंगी चूड़िया सामान कड़े आदि सब रखे हुए दिखाई दे रहे है गोल-गोल चकरी लटक रही है पंद्रह-पंद्रह रुपय लिखा है कुछ लीड्स --

सामने मेल एक बोर्ड लगा हुआ है नीचे फर्श पर बहुत सारे आदमी इखट्टे हुए है आपस में बाते कर रहे है लोग बहुत से इखट्टे हुए दिखाई दे रहे है।

इस मैदान मे पड़ा हुआ आगे कुछ चटाई बिछी हुई लाल कलर की है उसपे लड़के लड़कियाँ लड़कियाँ बैठी हुई दिखाई दे रही है।